ये एक जंगल है इस जंगल में बहुत लोग घूमने के लिए आते है बहुत बड़ा जंगल है जंगल में घूमने में बहुत अच्छा लगता है हम लोगो को और बहुत लोग आते है इस जंगल में जंगल के बीच एक घर है।

ये एक बहुत ही अच्छा जगह है जो की यहाँ एक छोटा सा गार्डन है उस गार्डन में घूमने के लिए बहुत लोग आते है हमलोग भी जाते है।

ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है जो की इस कॉलेज में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है और बहुत लोग --

बहुत लोग यहाँ घूमने के लिए भी आये है बहुत अच्छा लगता है इधर घूमने में और पिकनिक मनाने में--

ये एक क्लिनिक है जो की यहाँ एक--

ये एक मेन रोड है और इस मेन रोड में एक ब्लैक कलर का कार पार हो रहा है और इसके साइड में--

ये लोग बच्चे अभी स्कूल जाएंगे वहाँ पे डांस करेंगे वहाँ प्रोग्राम है इन ब --

बहुत ही बड़ा सा समुन्द्र जैसा है जो की इसमें बहुत लोग नांव से रेसिंग लगा रहे है बहुत ही अच्छा लग रहा हे दिखने में और यहाँ बहुत लोग मछली मारने के लिए आते हैं नांव से बहुत ही बड़ा-बड़ा मछली निकलता हे और मछली खाने में बहुत ही अच्छा लगता हे ।

टेम्पू स्टैंड है जो की यहाँ बोहोत सारे टेम्पू रहते है स्कार्पिओ रहते है बोलेरो रहते है इसमें एक आदमी अभी टेम्पू को--

बहुत लोगग इधर घूमने के लिए आते हैं बहुत अच्छा लगता है इधर घूमने में।